मि रेड कलर की चेयर पर बैठा हुआ है।

उसके बगल मे एक और रेड कलर की चेयर है।

स्प्रिंकलर में से बहोत तेज पानी आ रहा है।

पीछे सेल्फ पर फ्रूट्स भी रखे हुए हैं।

ऊपर वाली शेल्फ पर कम शर्ट्स रखी रखी हुई हैं।

ये किसी ड्राई क्लीनिंग दुकान का फोटो है।

एक आदमी ने येलो कलर की शर्ट पहनी हुई है।

ये कोई जिम का इनॉग्रेशन हो रहा है।

फोटो में दो लोग ऑटो का रिपेयरिंग कर रहे हैं।

वहां पत्थरों से बने दो आउटलेट भी दिखाई दे रहे हैं।

ये एक रिचुअल का फोटो है।

इन्होंने हाथों में एक बुक भी पकड़ी हुई है।

रोड के पास में छोटे छोटे पेड़ भी दिख रहे हैं।

गेट के बाहर एक हाथी एक बंदर और एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

ये एक हॉस्पिटल का फोटो है।

यहां बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

ये एक फोन का शॉप है।

उस पोस्टर पर जेरॉक्स लेमिनेशन पास फोटो लिखा हुआ है।

अप मे शेल्फ पर बहुत सारी चीज रखी हुई है।

चारों ओर फेंसिंग है और उसके बाहर बहोत सारे केले के पेड़ हैं।

उसने ब्लू कलर की शर्ट और बाहर से ग्रे कलर का जैकेट पहना हुआ है।

उन्होंने ऊपर से बनियान नीचे से शॉर्ट्स पहनी हुई है।

नीचे पर पासिंग के लिए एक गेट भी है।

गेट के ऊपर एक कैलेंडर लगा हुआ है।

उसके आगे एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

सामने पर एक ऑटो खड़ा हो रखा है।

नीचे फ्लोर अभी भी सीमेंट का है।

इसके नीचे हिंदी में भी स्कूल का नाम लिखा हुआ है।

रोड यू टर्न जैसा जा रहा है।

रोड पर एक वैन और एक ऑटो चलता हुआ दिखाई दे रहा है।